हम देख पा रहे हैं यहां पे स्विमिंग पूलस वगैरा देखने को मिल रहे है बट उसमे इस टाइम पे पानी वगैरा नहीं है और वहाँ पे जो पानी वाले झूले है उसको दोबारा से रिन्यू करा जा रहा है उसको दोबारा पैंट वगैरा करा जा रहा है वहाँ पर एक लड़का है जो कि वहाँ पर पेंटिंग करते हुए देखने को मिल रहा है।

बात करे तो यहाँ पर हम देख सकते है यहाँ पे हमें एक शॉप नजर आ रही है जिसमे दो गेट शामे देखने को मिल सकते है।

देख सकते है निचे की तरफ मिठी देखने को मिल रही है जमीन पर पड़ी हुई साइड में एक बॉउंड्री देखने मिल रही है जो पुर ग्रे कलर की है वहां पे --

काफी बड़ासा एक मशहूर सा काफी बहुत ही सुंदर सा एक गेट को देख पा रहे हो एसा लग रहा है काफी पुराना सालों पुराना वो गेट है बहुत ही ध्यान से उसमे काफी सारी नक्काशीया की गई है।

पिक्चर में हम देख सकते हैं की हमें अंदर की तरफ एक गुंबद सा बना हुआ छोटा सा मंदिर हमें नजर आ रहा है जिसमें एक मूर्ति भी रखी हुई है इस मंदिर के अंदर कि तरफ हम देख पा रहे हैं वहां पर कुछ समान रखे हुए जैसे कि वहाँ पर कुछ बर्तन-वररतं सटूल जैसे कुछ लगे हुए हैं।

हम ये भी देख सकते हैं कि ऊपर कि तरफ खुला आसमान है जिसमें हमें पक्षी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो कि बहोत प्यारे लग रहे हैं ब्लू स्काई में पक्षी उड़ते हुए।

से प प्लांट लगे हुए हैं और साइड में हम देख पा रहे हैं काफी सजावट की गई है बेंच वगेराह भी लगे हुए हैं ग्रास --

नाईट व्यू हो रहा है नाईट व्यू होने की वजह से हमें चाँद चमकता हुआ नजर आ रहा है बिलकुल और हम देख पा रहे है यहाँ पे पूरा मंदिर का एक व्यू है और निचे की तरफ हमें एक ब्लैक कलर की ग्रिल देखने को मिल रही है।

काफी प्यारा लग रहा है दिखने मे बीच मे एक बड़ासा गेट है जो की डार्क ब्राउन कलर का है ऊपर की तरफ हमे खुला आसमान दिख रहा है जिसमे कुछ बादल भी हमे नज़र आ रहे है।

और वहा पे टाइल्स भी नहीं लगि हुई है और वहा पे काफी मोटासा पिलर लगा हुआ है जहा पर लाल रंग का हमे गेट नज़र आ रहा है पीछे की तरफ हम कुछ मंदिर को भी और देख पा रहे है जो की ऊपर की तरफ हमे खुला आसमान देखने को मिल रहा है जिसमे सफेद रंग के बादल हमे चमकते हुए दिख रहे --

काफी प्यारी सी एक दिवार देख पा रहे है जिस पर भगवानो की मुर्तिया फोटो वेगरा बनी हुई है काफी प्यारी प्यारी और कुछ मटकी सी ऊपर छत पे से रसियो से टांग रखी है मटकी लटका रखी है।

देख पा रहे है यहाँ पे पूरी ग्रिल लगा के रखी हुई है आगे तक जो की लाल रंग की है और ऊपर से जो टॉप है उसका कलर है उप येल्लो कलर का है सामने की तरफ उन दीवारों को देख सकते है जो कि लाल और वाइट से कलर की है हम देख पा रहे है कि वहाँ पे कुछ गेट वगेराह भी बनाके रखे हुए है।